आगे की तरफ तीन से चार बड़ी बड़ी बिल्डिंगे बनी हुई है।

यहां पे बहुत से परफ्यूम दिखाई दे रहे हैं लोशन है बैग है।

साथ में यहां पे हार्डवेयर वगैरह भी मिलते हैं।

जिसमें उन्होंने की फोटोस दिख रहे है कुछ मेडिसिन दिखाई दे रही है।

यह एक बगीचा है जिसमें बहोत से पेड़-पौधे वगैरा लगे हुए हैं।

यह एक होटल की फोटो है जिसका नाम है पैलेस ।

टैक्सी वगैरह है कुछ स्कूटी कुछ साइकिल वगैरह चल रही है है।

यह एक बेकरी शॉप है जिसका नाम है शीतल बेकरी --

उसके पास में एक और दुकान है जिसमें एक गाड़ी फोटो जैसी गाड़ी खरीदी हुई--

उसके पास में एक दान पेटी रखी हुई है।